यहां बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग --

यहां आशा आयुर्वेदा केरला पंचकर्मा का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर फैशन आधा का पोस्ट लगा है।

जहां पर बहुत सारे लोग हैं।

यहां एक महल बना हुआ है।

या बहुत सारे लोग रुक रहे हैं।